तथा वहाँ पे हमें बहुत से ऊँचे-ऊँचे टावर बने दिख रहे हैं जो की ऑरेंज कलर के हैं जिसपे हमें कार दिख रही है जो की सुधरती हुई नजर आ रही है।

दुकान नजर आ रही है तथा उस दुकान में हमें एक लेडीज कपड़े सिलती हुई नजर आ रही है वह --

वहाँ दीवाल पे हमे डी.एस.पी. सोडा सस कॉफ़ी शॉप लिखा दिख रहा है | वहाँ पे हमे नीचे तीन दोस्त बैठे दिख रहे हैं जो कि खाना खाते हुए नजर आ रहे |